ये एक इंटरनेट का बहुत अच्छा और लंबा टावर है।

जिसके ऊपर कांच का शीशा है।

जो काफी भीड़ में खड़े हैं।

और एक व्यक्ति ने अपने हाथ में बैट पकड़ा है।

और बीच में टेबल रखी है।

गुब्भारे अलग अलग कलर के सुफेद और नीले कलर के हैं।

दुकान के अंदर एक पोस्टर भी रखा है और बाहर सीढ़ियां भी है।

यहां पर कुछ महिलाएं कुछ पुरुष खड़े हैं।

कमरे के अंदर सुफेद कलर का पेंट हुआ है।

और इसके आस पास हरे कलर की पत्तियां भी हैं।

ये एक बहुत अच्छा मैदान है।

दो व्यक्ति साइकल पर भी बैठे हैं और बीच में एक खंभा है हरियाली भी है।

ये एक तीन बहुत अच्छे हरे कलर के पेड़ खड़े हैं।

घर के अंदर बहुत सारे अच्छे सोफे रखे है सोफो के ऊपर तकिए भी रखे हैं।

यह एक बहुत अच्छी कॉफी किताब की दुकान है।

व्यक्ति ने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं।

और पीछे ही एक दुकान भी है।

यहां पर एक पीदे कलर की स्कूल बस खड़ी है।

यहां पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं।

दुकान में शीशे भी लगे है।